यहाँ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

और एक घडी लगी है यहाँ पर कुछ दीपक जलते हुए दिख रहे है।

दो टेबल रखी है यहाँ एक कैलेंडर दिख रहा है।

यहाँ आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ कुछ ईंटे और मिट्टी दिख रही है और पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

यहाँ बड़े - बड़े पेड़ लगे है।

कुछ केले संतरे और अनार रखे है और यहाँ एक लाल बड़ा सा--